एक कोचिंग क्लास दिखाई है उसमें सप्पेद कलर और नीले कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

काले कलर का दरवाज़ा है उसके पास एक --

एक आदि ऑटो दिख रही है। काले कलर की ऑटो है वो।

एक हाफ दिकड़ सजा है। राईट कलर का कार्पेट दिख रहा है।

मुझे एक दुर्गा जी का मंदिर दिख रहा है। लोड जा रही है। रोड के पास एक ऑटो वाला खड़ा है। ऑटो के --

मुझे एक छोटा-सा तलाब दिख रहा है।

स्टील की रेलिंग लगी हुई हैं रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ हैं कारपेट के पास में एक और कारपेट --

कुछ कारे दिख रही हैं जो की पार्क है। डस्ट्बिन दिख रहा है। कुछ बाइक खड़ी हुई है।

हरे हरे पेड़-पोधे लगे हुये हैं वहां --

एक मेकेनिक दिख रहा है। उसके पास मे कुछ मशीन है।

मुझे एक ते तेतिस बटे इग्यारह का विधुत उपकेंद्र दिख रहा है।

मुझे एक स्टेशन दिख रहा है। स्टेशन मे कोई नहीं है।

कुछ हरे कलर की बोर्ड बोट दिख रही है लाखे की बोर्ड दिख रही है गुलाबी कलर की भी बोर्ड है।

मुझे एक मैरिज हॉल दिख रहा है।

गौशाला के पास मे मुझे एक पेड़ दिख रहा है। पेड़ के पास मे एक स्टेयर रखी हुई है।